यहाँ हमें कई सारे बेंचे कतार से सजी हुई दिखाई दे रही है।

इसमें ग्रीन कलर की शर्ट तथा नीले कलर की पैंट पहन रखी --

इन पर कुछ छात्र बैठे हुए अपने कार्य को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में एक सक्स दिखाई दे रहा है।

सिंगार का सामान बिकता हुआ दिखाई दे रहा है।

तस्वीर किसी बहुत ही ऊंचे पहाड़ का है।

यहां पारदर्शी शीशे भी इंस्टॉल किए गए हैं।

तथा इसके ऊपर खाने के कई सारे बर्तन रखी हुई दिखाई दे रहे हैं।

तथा दो घडिया भी दीवाल से टंगी हुई नजर आ रही है।

यहां पर नीले रंग की क्रेट में कुछ चीज भर कर रखी गई है।

जिसने अपने गले में एयरफोन टांग रखा है।

तथा कार्टून वाले तकिये रखे हुए हैं।

जिसके बोर्ड पर मैथमेटिक्स क्लासेस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में एक परिवार दिखाई दे रहा है।

तथा एक व्यक्ति जिसने सर पर टोकरी ले रक्खा है।

तस्वीर में हमें कई सारे लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है।

जिस पर कुछ लिखा गया है।